नीचे कुछ किताबे पड़ी है इधर फोटोकॉपी वाली मशीन पड़ी है कागज पड़ी है लाइट फिटिंग है इसके अंदर सफेद कलर का पेंट किया हुआ है।

ऊपर टंकियां पड़ी है सफेद कलर की पानी वाली--

वहां चारों तरफ दीवार बनी हुई है दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ दीवार के पीछे की साइड बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है अंदर की साइड पौधे लगे हुए --

पर बहोत सारी सफेद कलर की कुर्सियां पड़ी है बीच में बहोत सारी सफेद कलर की बेंचेस पड़ी है एक आदमी खड़ा है इधर साइड एक दुकान है दुकान के अन--

यहां पर एक बैनर लगा हुआ है दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे चश्मे पड़े है खिलौने पड़े हैं।

पीछे की साइड में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और आगे से पक्की रोड निकल रही है रोड के ऊपर एक साइकिल चला रा है एक आदमी उसकी मास्क लगा हुआ है।

और आगे के साइड एक कांच का दरवाजा लगा हुआ है दरवाजे के ऊपर कुछ लगे हु--

इधर साइड बहोत सारी दुकानें बनी हुई हैं एक कूलर लगा हुआ है और सामने भी --

एक आदमी खड़ा है जिसने हरे कलर का टी शर्ट और चड्ढा पहना हुआ है पीछे बहोत बड़े बड़े पत्थर है पहाड़ बने हुए हैं।